यह एक होमिओ क्लिनिक है।

यह ए.टी.एम. हमेशा खुला रहता है। यहाँ पे लोग पैसे उठाने के लिए आते ही --